दाएँ दाएँ तरफ भी एक तस्वीर लगी हुई है और बाएं तरफ भी छोटी एक तस्वीर --

और पे जो मंदिर का शिखर है वहाँ बहुत ऊचा है |

और टेम्पू भी खड़ा हुआ है पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर।

और कार के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं दो तीन लोग |